चेयर व्हाइट कलर की रखी हुई है।

यह आर्टिफिशियल खिलौनों का दुकान है।

एक कपड़े का शोरूम है।

बच्चा व्हाइट टी शल्ट पहने हुए--

यहां पे एक स्कॉर्पियो खड़ी है।

एक हुंडई की कार पीछे सफेद कलर की है।

जिसमें बादल छाए हुए हैं।

लोहे की चेयर बैठने के लिए बनी हुई है।

नीले कलर का बोड़ लगा हुआ है।

दाहिनीं तरफ शिवजी की आरती लिखी है।

और गोल्डन कलर का गेट लगा हुआ है।

यह लखनऊ का दिलकुशा पार्क है।

और एक सज्जन पूजा कर रहे हैं।

और एक आदमी सफेद सल्ट पहन के खड़ा है।

टू इंटू टू ए_सी स्लीपर कोच है।

जिसमे रायबरेली डिपो की बस खड़ी हुई है।

और इसमें पे पेंटिंग हरा लाल पीला और नीला कलर का है।

ये एक स्टेशन है प्लेटफार्म है।